यह एक बहोत बड़ा मैदान है इसमें बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

ये एक बहुत बड़ा समुन्द्र दिखाई दे रहा हैं जिसमे के नाव हैं लड़की का--

यहाँ पे एक आदमी है जो इसको खोल रहा है और यहाँ पे एक चश्मा लगा है लगाया हुआ है हरे रंग का दिख रहा हैं ।

यहाँ पे गधे दो गधे दिख रहे है यहाँ पे बड़ा सा पत्थर रहा हुआ हैं और इसको घेरा करके रखा गया है।

पूल के पूल में एक महिला खड़ी है।

इसमें टीचर भी कुछ लिख रहे है और बच्चो को पढ़ा रहे है इसमें बहोत सारे स्टूडेंट लोग है जो कलरफुल कपड़ा पहने हुए है ये कॉलेज है जैसे लग रहा है।